और उसके बराबर एक बाइक खड़ी है।

इसमें दो प्लेट में चावल रखे हैं और उनमें कुछ चम्मच भी रखी है।

और उनके पास कुछ हरे भरे पेड़ भी खड़े है।

और उसके पास एक समर्सेविल --

यह एक कार है कार का कलर ब्लैक है।

और नीचे कुछ टाइले बिछी हुई है।

यह एक बड़े कलस की तरह बना हुआ है।

और उसके आदमी ने एक ब्लैक कलर का कुर्ता व्हाइट कलर का पजामा पहना हुआ है।

ये एक मेडिकल स्टोर है।

और कुछ लड़के खड़े हैं।

और तीन बाइक भी खड़ी हैं।

और यहां पर कैमरे भी लगे हुएं हैं।

और कुछ फ्रिज भी रखे हैं जिनके अंदर कुछ बॉटल्स रखी है।

ये एक बहुत बड़ा खेलने का मैदान है।